यह चित्र बहोत सुंदर दिख रहा है।

यह चित्र एक बुक लाइब्रेरी का लग रहा है जहां ऊपर--

जो अलग-अलग रंग के प्रतीत होते हैं।

यह चित्र एक पेट्रोल पंप का लग रहा है।